यहाँ पर दो बांस गढ़ी हुए हैं उनके ऊपर एक टिन है।

पास ही में एक मकान बना हुआ है दूर --

और उस पर डॉक्टर अनुज कुमार लिखा हुआ है।

और इन्होंने पिलर खड़े कर दिए हैं पास में लकड़ियाँ डली हुई हैं इनके पास --

हाथ में इसके मोबाइल है गले में तौलिया डली हुई है और ये फेस केयर करवा रहा है ।

जहाँ पे बच्चे मैच खेलते है और यहां पर तीन स्टंप गड़े हुए है।

और जे एक पट्टी है इस पर एन.ए.बी. लिखे हुए हैं।

यहाँ पर जीम मशीन रखी हुई है इस पर कुछ रखे हुए है और ये खींच रहे है पास में ही दो लोग और खड़े हुए है |

प्लेट है इसके ऊपर मेढ़क जैसा कुछ चढ़ रहा है और ये अलादीन वाला चिराग है |

ये एक हेयर सैलून की दुकान में बैठी हुई है।

बाउंड्री का कलर वाइट हैऔर पास में एक चट्टान है और जे --